इस चित्र में एक रेस्टोरेन है जिस पर थाली पर बिरयानी रखी गई है टेबल पर--

बहोत बड़ी व्हाइट कलर की बिल्डिंग्स है और इस स्विमिंग पूल के अंदर बहोत लोग नहा रे है।

और एक बड़ा सा टेबल भी है जिसमें ब्लैक कलर की तीन चेयर लगे हुए हैं।

चित्र के अंदर एक बहोत बड़ा गार्डन है।

इसमें तो ऐसी दिखाई दे रहा है रेड कलर की दीवार पर पेंट दिखाई दे रहा है।

तीन चेअर हैं एक व्हाईट कलर की टेबल हैं जिसके ऊपर एक लॅपटॉप हैं तीन चाय वाली कॉफी हैं।

और ब्राउन कलर की जमीन है जिसमें बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं दुकान भी दिखाई दे रही है।

जमीन पर हरी हरी घास है और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं।

और बहोत सारी सब्जियां दिखाई दे रही है।

इस चित्र के अंदर एक जंगल है जिस पर बहुत सारे गाय भैंस--

घास चर रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ भी हैं और नीचे जमीन पर हरे हरे घास भी लगे हुए हैं।

और पीछे पर एक मैदान सा दिखाई दे रहा है पेड़ भी है और भी घर है।

और बाहर पे बड़े बड़े कांच के खिड़कियां लगी हुई हैं लाइट के खंभे लगे हैं।

ऊपर कांच की खिड़कियां भी लगी हुई है।